ये एक नदी है नदी के अगल-बगल बहोत सारे पत्थर रखे हुए है और नदी के बीच-बीच में भी कोई पत्थर है ।

एक तरफ प्यारे-प्यारे पेड़-पौधे लगे है और एक तरफ बाउंड्री की हुई है इसमे आधा ईटा का है और आधा ग्रिल लगा हुआ है।

जो बहुत प्यारा लग रहा है पहाड़ो से पहाड़ पर कहीं-कहीं पर हरे-हरे पेड़-पौधे भी है जो बहुत प्यारे लग रहे है।